यह मा यह माँस मंडी है। माँस मंडी है। यहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं। मछलियाँ बहुत तरीके की होती हैं रेहू मागोर कतला और चिहा मछली आदि। जो रेहू मछली है यह तो बैन हो चुकी है लेकिन बाजारों में लगातार खुले आम बिक रही है।